फसल उपजाऊ की गई हुई है। यहाँ पे हरे रंग की घास दिख रहे हैं। और ऊपर में एक आसमान है नीला कलर का।

प्रकार के स्पोर्ट्स के खेलने की समाने रखी हुई हैं जैसे की कपडे है नीचे में ऊपर में फुटबॉल है चार बैडमिंटन है।

यह बुद्ध टेम्पल है ये देखने में बहो बहुत ज्यादा सुंदर यह सफ़ेद रंगो से रंगा गया है इसके नीचे सीढ़ियां बनाई गई हैं ।

यह एक स्पोर्ट्स की दुकान है जहाँ पे रंग-बिरंगे चीजे रखी गई है इसके बैक ग्राउंड में हरा कलर का --

यह एक कटोरी एक बाउल में तीन प्रकार की आइसक्रीमे रखी है जो कि एक वैनिला है एक स्ट्रॉबेरी है।

यह एक झील के पास एक बोट खड़ी है। जहाँ पे तीन आदमी है। बो ये बोट बहुत --

यह एक डेयरी की शॉप है। जहाँ पे बहुत सारी भीड़े लगी हुई है। यहाँ पे एक लड़का है जो की पीले रंग के शर्ट में बैठा हुआ है यहां पे |

चार लाइटे जल रही है जो कि रंग-बेरंगी है। एक नीला और एक साइड गुलाबी लाइट जल रही है। यहाँ पे दो आदमी बैठे हैं।

यह एक नदी है जो कि यहाँ अ ब बोहोत ही बड़ी है। यहाँ पे लाइट रंग-बेरंगी नही पीले रंग की लाइट लगी हुई है।